बड़ा सा स्विमिंग पूल है और बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे है स्विमिंग पूल के अन्दर बहुत सारे रिसक पट्टिया लगी हुई है।

छोटी सी पुल उल की सड़क दिख रही है सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा है दो व्यक्ति मोटर साइकिल से जाते हुए दिख रहे हैं।

व नदी के आइड साइड हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हुए है और एक बड़ा सा टॉवर दिख रहा है।

चट्टान के अगल-बगल हरी-भरी सी घास है और कुछ छोटे-बड़े पेड़ लगे हुए है।